गाड़ियों में काम चल रहा है जिसमे एक गाडी का टायर निकला हुआ है। दूसरे में --

जोकि मसाला बनाके प्लेट्स भर रहे है प्लेट्स में सरिये दिख रहे हैं। प्लाट की चारों तरफ बाउंड्री है।

वेंटीलेशन लगी हुई है। खिड्किया है। काफी लोग बैठे हुए है। चेयर का कलर का लाल है। केवेन का कलर है।

दरवाजे के अंदर दो व्यक्ति दिख रहे हैं जो खड़े हुए हैं। दरवाजे के बाहर गुलाबी कलर का कर्टेन लगा --